इस तस्वीर में मुझे एक वॉल भी नजर आ रहा है वॉल का कलर ग्रीन है।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

इस तस्वीर में मुझे लकड़ी का ब्रिज भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक टेबल भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे इलेक्ट्रिक पोल और वायर भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे पहाड़ भी नजर आ रहा--

इस तस्वीर में दो आदमी ने ग्रीन कलर का जैकेट पहना हुआ है। उन्होंने वाइट कलर का हेलमेट भी पहना हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे एक टेंपो भी नजर आ रहा है टेंपो का कलर रेड है।

इस तस्वीर में मुझे पेड़ पौधे भी नज़र आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे पाइनएप्पल है भी दिखाई दे रहा है।

गाय को रस्सी से बांधा गया है।

बास्केट में गाय के खाने के लिए भूसा रखा हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे एक आदमी भी नजर आ रहा है।

ये तस्वीर किसी जिम की हो सकती है।

इस तस्वीर में मुझे पहाड़ भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे इलेक्ट्रिक की वायर भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे पाम का ट्री भी नजर आ रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे कई सारे लोग दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक चप्पल भी दिखाई दे रहा है चप्पल का कलर रेड हे।

इस तस्वीर में मुझे बंबू का बेरा भी नजर आ रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे फ्लावर के पोट्स भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारे रिक्शा भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारे पत्थर भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में वॉल का कलर व्हाइट और रेड है।